जैसे की में देख पा रही हूँ यह सुबह का समय है सामने एक्सिस बैंक है।

और पार्क में कोई नहीं दिख-- दिख रहे है और लेखिन बहुत सुन्दर सा पार्क अच्छा लग रहा है |

आदि के मोहोल लग रहा है और वेट बाद- बाद के आकर स्टेज के ऊपर डाला गया है सोफा रखा गया हैं।

और बहोत ही बड़ा एरिया है लाइट लगा है।

और यह बहुत एक शेड है जो बहुत अच्छा लग रहा है सुखा जगह है यहाँ पे --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह सुबह का समय है सामने एक जिम है जिम में बहुत सारे जो मशीन्स है।

इसमें मै देख पा रही हु सुबह का समय है और सामने एक रेस्टोरेंट है।

जैसे की में देख पा रही हु है दोपहर का समय है सामने एक दुकान है जिसका नाम है अवेसमे मेंस बेस्ट कलेक्शन --

अअअ बुक्स है और बहोत सारे टॉयज मिल रहा है यहाँ पे दुकान में--

अ चीजे है जो बहुत अट्रैक्टिव हैं बच्चों को लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है।

खाना देखने में यम्मी भी लग रहै है बोहोत अच्छा लग रहा --

सुन्दर बगीचा है और बच्चे खड़े है कुछ बच्चे खेल रहे है लोग चल रहे हे।

ये जैसे एक बड़ा-सा हॉस्पिटल है जिला चिकित्सालय सुकमा उसका नाम है।

बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है ये बहुत अच्छा जगह है।

ती देख पा रह हूँ सुन्दर सा--